जोकि बहुत लम्बाई चौड़ाई में फैला हुआ है।

नैचे बोहत बड़ी बाहद पार्किंग बनी हुई है।

कई सारे लोग एक साथे बैठे हुए है टेबल कुर्सी पे --

ऐसा लग रहा है जैसे क्लियर क्ले का गेट हो बगल में क्ले की एक बौंडरी दिख रही है।

ओरेंज ओरेंज सा हो रहा है। बीच-बीच में हरा-हरा हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पानी गया है तो काई लगी हो।

अभी मोटरसाइकिल में सीट नहीं लगी हुई है बहुत सा काम बकाया है।

कुछ आँखों के डिजाइन बने हुए हैं। अंदर सोफे रखा हुआ है। एक टेबल रखी है। टेबल पर पॉट रखे हुए हैं।